यहाँ पे लगता है एक मकान है आगे एगो टिन लगा हुआ है। आ उसमें गाछ भी बगल में है और हरा जैसा गाछ झलक रहा है अ इधर एगो भी आ गया और इधर एगो मरदाना जा रहा है।

यहां पे लगता है गधा है और बगल में मकान है की क्या है उसमें रेलिंग सब है।

आदमी सब बहुत है वहां पर काला जैसा कपड़ा पिन्हा है बहुत आदमी कौउवा बहुत आदमी उजाला जैसा है जैसा ब्लू भी है अ एगो गेट भी ब्लू है।

वहाँ पे एक रोड है वहाँ घर भी है एक नारियल का गाछ भी है वहाँ पे एगो बाजा भी लगा है।

लगता है कोई फील्ड उल्ड है उसमें भी स्कूल है और वहाँ दुगो बाथरूम दिया है। आउ वहाँ पे एगो आदमी दुगो बइठल भी है पीछे लगता है जंगल है और देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है। निचे घास तक हरा सब झलक रहा है।

वो लोग की है उजला है आदमी बोहोत सारा आदमी है | यहां लगता है कि कोई मशीन है एटीएम जैसा लगा हुआ है।